आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पर बहुत सारा पानी हैं और यहाँ पर पानी में एक पत्थर हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पानी के पत्थर में एक आदमी बैठे हुए हैं बोल्डर पर।

यहाँ पे आप देख सकते है बहुत ही अच्छे यहाँ पर देखने मे लग रहे हैं | काफी सुन्दर हैं और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर करने के लिए बनायी गयी बच्चों को--

और यहाँ पर फूलों का माला भी लगाएं हुए हैं जोकि गेंदा फूलों का माला है देखने में बहुत ही अच्छे लगतें हैं ये ए_टी_एम काफी सुन्दर है ।